एक जगह है एक आसमानी एक बादल है।

ये एक जगह है दुकान एक शॉप का दुकान है उधर परफ्यूमस का दुकान उधर--